हम्म दूल्हा दुल्हन की चेयर्स लगी हुई है। लाइट्स लगी हुई हैं।

इमेज मे दुकान है। अंदर रैक्स मे बोहोत सारा सामान रखा हुआ है।

और नीचे की तरफ दो भगवान की फोटो रखी हुई है।

अ अ स्केलेटन रखा हुआ है |

खिड़की है। खिड़की पे पर्दा लगा हुआ है। स्विच बोर्डस लगे हैं।

मग में कॉफ़ी है। मग पर नेसकैफे लिखा हुआ है। कॉफी बीन्स बनी हुई है |

अ कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं।

आ लड़के ने पैरों में और हाथों में शूज पहेने हुए हैं।

और बीडी वर्ल्ड स्कूल नाम लिखा हुआ है।

अ दो टीचर्स सामने की तरफ खड़े हुए है।

आ खंभे लगे है खंभों पर लाइट्स लगी हुई है।

पीछे की तरफ दीवार पर एक बैनर लगा हुआ हे।

इमेज में पार्क है। पार्क में कुछ जिम मशीन्स लगी हुई हैं।

अ टेबल्स के दोनों साइड लोग बैठे हुए हैं।

इमेज में एक एंट्रेंस गेट बना हुआ है।

इमेज में स्विमिंग पूल है। अ पूल में कुछ स्लाइड्स लगी हुई है |

आ पार्क में एक्सरसाइज मशीन्स लगी हुई है।

अ कुछ स्टॉल्स टंगे हुए है।

एजुकेशन पॉइंट लिखा है कॉन्टैक्ट नंबर है।

अ गेट पर राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा लिखा है।

एक बोटल मे लोलीपॉप्स रखी हुए हैं। अ वेट मशीन रखी हुई है|

अ कुछ कोल्डड्रिंक्स की बोटल है। दो लड़के दिखाई दे रहे हैं।

अ पिंक कलर का हैप्पी बर्थडे टैग लगा हुआ है।

अ तेल की केन्स रखी हुई हैं।

वहाँ चार मिरर्स लगे हुए हैं।

बैनर पर अन्नपूर्णा चाइल्ड एंड मेटनिर्टी क्लिनिक लिखा है।